यह एक एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट में एक हवाई जहाज है। हवाई जहाज में कुछ यात्री चढ़ रहे हैं कुछ उतर रहे हैं। सामने एक महिला है। सामने एक रोड है। सामने आकाश नीला दिख रहा है।

अ - पर्दा लगा हुआ है सामने पंडित बैठे हुए हैं एक और दूल्हा और दुल्हन सामने बैठे हुए हैं उनके सामने थाली रखी हुई हैलेडीज़ आपस में बातें कर रहीं हैं।

बिल्डिंग इमारत का निर्माण हो रहा है सामने एक इंजीनियर है इंज- बिल्डिंग को देख रहा है सामने सरिया लगी हुई हैं।